और यहाँ पे कलर फूल माइक भी लगे हैं जो धारी की डिझाईन से कलर करे हुए हैं जो पीले और गुलाबी हैं।

ओर इसमे एक नाव है ओर नाव के उपर बोत सारे लोग बैठे हैं जो नाव को --

दंडे की मदद से चला रहें हैं और पानी सफेद ओर नीला दीखाई दे रहा है।

यहां पे एक बोहोत सुंदर ही नजारा दीखाई देरा है आप देक सकते हैं पहाड दीखाई दे रहे हैं।

एक चेन से उसके बालों को कट कर हुआ कर रहा है उसने सफेद कलर का कपडा --

और यहाँ पे चारो तरफ पिला और काला पट्टीवाली छोटी-छोटी दीवार बनी है पेड़ भी दिखाई दे रहें हैं।

यहाँ पे दो लोग खड़े जिनके पिछे बैग रखें हुए हैं और जो फल यहाँ पे तरबूज है केला दिखाई दे रहा आंगूर हैं।

दिवारे जो निले कलर की हैं ओर सफेद कलर की लाइट जल रही है।

ओर एक मूर्ती का चेहरा बना हुआ है और उसके सामने सायकिल --